उधर एक लड़का खड़े हैं हाथ मे स्टिक लेकर।

और उनके बगल में गमछिया भी रखी हुई है।

उनके बगल मे एक लड़का और एक लड़की का शादी हो रहा है।

इसमें दो होटल के मालिक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और उनके बगल में व्हाइट कलर के टेबुल भी है।

काफी सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह एक कांसा का दुकान है।

और उधर भी एक बंडल रखा हुआ है।

यह एक पेंटिंग का दुकान है।

जिसमें काफी सारे रंग रखे हुए हैं।

उधर भी एक वाइट कलर के पुट्टी से पेंट किया गया है।

यह एक घर है जिनका दृश्य बहोत ही सुन्दर है।

अंदर एक व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

अगल बगल में हरे कलर के पेड़ काफी सारे लगे हुए हैं।

सामने में काफी सारे लड़के नजर आ रहे हैं।

घर के अगल बगल में हरा कलर के मारकीन से सजाया हुआ है।

और अगल बगल में काफी सारे बॉस भी दिखाई दे रहे है गड़े हुए।

उनके ऊपर में एक तार भी खींचा हुआ है।

और नीचे में एक लिसन और एक कुर्सी नज़र आ रहा है।

भी फ्रिज एक दिखाई दे रहा--

और उनके बगल में काफी सारे चोकलेट भी लगाये गये हैं।

और उधर भी एक ब्ल्यू कलर के रंगीनो से रंगा हुआ एक टी शर्ट और पैंट भी नजर आ रहा हैं।

और व टंकी में के रास्ते में एक बाइक खड़े हैं।

बाइक के दो सौ मीटर आगे एक ट्रैक्टर खड़ी है।

इधर भी काफी सारे बाईकें खड़ी है।

एक बाइक में एक लेडीज और एक जेंट्स जाता हुआ नजर आ रहा है।

बगल में एक बाइक है ऊपर में ब्लैक कलर का सैमसंग लिखा हुआ है उनके बगल मे --

उनके बगल में काफी सारे बाइके भी खड़ी है।

अगल बगल में काफी सारे लिप्टस के पड़े लगे हुए हैं।

उधर भी एक गमले में घास लगाए गए हैं।